एक कपड़े की शॉप है जहां पे एक ब्लैक कलर का कोट टंगा हुआ है | इसके आस-पास दो कम्पोस टाइप के हैं जिसमे साड़ी पिन जैसी रखी हुई हैं ।

साथ ही दो डिब्बी लगी हुई हैं जिसमें डी.पी. कसाती हैं और ये टावर बोहोत लम्बा है और सामने खुला आसमान भी नज़र आ रहा है।

यह एक खुला मैदान है जिसमे एक रोड वाला झूला है और साथ ही दो हरे कलर के कुर्सी वाले झूले है और एक झूले पे जेंट्स बैठा हुआ है --

यह एक टेंट नजर आ रहा है जो कि रंग बिरंगे कलर का है ये टेंट कि दुकान है जिस पर ये लड़का इस टेंट को बेच रहा है इस टेंट का कलर पीला नीला --

ये सामने एक हॉल है सामने एक मार्कर लगा हुआ है और बहुत से लैपटॉप रखे हुए हैं और कुर्सियाँ राखी हुई हैं।